teachers dashboard in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम एक विशिष्ट moodle course overview के बारे में सीखेंगे
उसके बाद हम teachers dashboard profile एडिट करना और preferences एडिट करना सीखेंगे
अंत में हम moodle पर अपने course से संबंधित कुछ प्रारंभिक विवरण जोड़ना सीखेंगे
यह tutorial
हालांकि internet explorer का उपयोग न करें क्योंकि यह कुछ प्रदर्शन विसंगतियों का कारण बनता है
इस tutorial के अनुसार आपके site administrator ने एक moodle website सेटअप की है और आपको एक नया रिक्त course असाइन किया है जहां आपके पास teacher privileges है मेरे system administrator ने पहले ही निम्न कर दिया है
कृपया ध्यान दें teacher role calculus कोर्स के लिए यूजर rebecca raymond को असाइन किया गया है
इस website पर moodle tutorials को संदर्भित करने के लिए अपने site administrator से पूछें
और आपके लिए एक यूजर बनाएं जिसके पास कम से कम एक course के लिए teacher privileges हो
moodle सबसे अधिक अनुनेय रचनात्मक और सीखाने में और आसान सीखने की प्रणाली में से एक है
आमतौर पर moodle का उपयोग शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है
web resources को साझा करने और शैक्षिक resources को खोलने के लिए
quizzes और assignments को व्यवस्थापित करना
अंतःक्रियात्मक और अतुल्यकालिक रूप से छात्रों के साथ बातचीत और संवाद करना और छात्रों की सीखने की प्रगति को track करना
मेरे पास मेरे calculus course का course overview है
मेरे पास topics है जिन्हें कवर किया जायेगा
quizzes की कुल संख्या साप्ताहिक या पाक्षिक
मुझे अपना course तैयार करना है और सभी सामग्रियों को moodle के अनुसार upload करना है
browser पर जाएँ और moodle site खोलें
header और उपलब्ध courses के साथ एक पेज प्रदर्शित होगा
window के ऊपरी दाईं कोने पर login link पर click करें
मैं teacher rebecca raymond के रूप में login करूंगी
हम एक ऐसे पेज पर हैं जो हमें अपना password बदलने के लिए संकेत देता है यह इसलिए क्योंकि force password change option को पहले admin द्वारा activated किया गया था
वर्तमान password type करें और उसके बाद नया password type करें मैं spokentutorial12 #type करूंगी
new password को फिर से type करें और फिर नीचे save changes button पर click करें
एक सफल संदेश यह पुष्टि करता है कि password बदल गया है continue button पर click करें
अब हम जिस पेज पर हैं उसे dashboard कहते हैं
हमारा dashboard 3 columns में विभाजित है
बाईं ओर एक navigation menu है बीच में timeline और courses tabs के साथ मुख्य course overview भाग है
दाईं ओर blocks column है
courses tab उन courses को सूचीबद्ध करता है जिनमें आप नामांकित हैं course overview भाग में courses टैब पर click करें
in progress टैब में हम यहां 2 courses देखते हैं: calculus और linear algebra इन courses को admin द्वारा teacher rebecca raymond को असाइन किया गया है
उन्हें असाइन किए गए भविष्य के courses future टैब में दिखाई देंगे इसी तरह उसका कोई भी courses जो खत्म हो चुका है past टैब में देखा जाएगा
अब हम पेज के header को देखते हैं ऊपरी बाएँ कोने पर हम navigation drawer या navigation menu let सकते हैं
यह calendar private files और my courses links को access देता है
यह toggle menu है जिसका अर्थ है यह है कि status को open से close में बदलता है और clicked करने पर इसके विपरीत हो जाता है
ऊपरी दाईं ओर notificationsऔर messages के लिए quick access icons हैं
ऊपरी दाईं ओर मौजूद profile picture पर quick करने से हम user menu को access कर सकेंगे इसे quick access user menu भी कहा जाता है
इस पर click करें ये सभी menu items toggle menus हैं जो बायीं ओर के समान हैं
profile option पर click करें moodle में प्रत्येक यूजर का profile page होता है
यह उनकी profile जानकारी को edit करने उनके द्वारा नामांकित courses देखने की अनुमति देता है
उनके blog या forum posts दिखाता है किसी भी reports की जाँच करता जिनका उनके पास access है और उनके access logs दिखाता है जिसका उपयोग पिछली बार login करने के लिए किया गया था
अब edit profile link पर click करें
edit profile पेज खुलता है
default रूप से general और user picture sections का विस्तृत होता है
दाईं ओर पर the गए expand all link सभी sections को विस्तृत करता है
और किसी भी section name पर क्लिक करने से वह विस्तृत या संक्षिप्त हो जाता है
यहाँ सभी fields एडिट योग्य हैं
आप अपना व्यक्तिगत विवरण general section में प्रविष्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी किया है
एक teacher के रूप में मैं अपने छात्रों को मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहती हूं
इसलिए यहाँ description field में मैं कुछ विवरण भरूँगी
tutorial को रोकें और अपना विवरण भरें जैसा कि मैंने यहां किया है
आप अन्य fields और sections में कुछ जानकारी भी जोड़ सकते हैं आप अपनी तस्वीर भी upload कर सकते हैं
मैंने general और optional sections में कुछ और विवरण जोड़ दिए हैं
फिर update profile button पर click करें और पेज को सेव करें
अब फिर से सबसे ऊपर दाईं ओर मौजूद quick access user menu पर click करें और preferences link पर click करें
preferences पेज यूजर को विभिन्न settings के लिए quick access देता है जिसे वे edit करना चाहते हैं
teachers account के लिए preferences पेज
हमने पहले ही profile को edit करना और password को बदलना सीखा है
कुछ और preferences हैं
calendar preferences पर click करें
हम 24 घंटे के प्रारूप में समय प्रदर्शित करने के लिए calendar set करेंगे
साथ ही हम 2 सप्ताह के लिए upcoming events lookahead set करेंगे
इसका मतलब है कि हम calendar पर अगले 2 सप्ताह में होने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए सूचनाएं देखेंगे
save changes button पर click करें
जब हम इस श्रृंखला में बाद में उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे तो हम बाकी preferences समझेंगे
यहाँ सूचना देखें
यह breadcrumb navigation है यह एक दृश्य सहायता है जो इंगित करता है कि हम moodle site अनुक्रम के किस पेज पर हैं
यह हमें एक click के साथ उच्चस्तरीय पेज पर वापस जाने में मदद करता है
dashboard पर जाने के लिए breadcrumbs में dashboard link पर click करें
add देखते हैं कि calculus course के लिए एक विषय और संक्षिप्त सारांश कैसे जोड़ा जाए
बाईं ओर navigation menu में calculus course पर click करें
नए पेज पर ऊपरी दाईं ओर gear icon पर click करें
फिर turn editing on option पर click करें
पेज अब अधिक edit options प्रदर्शित करता है
topic 1 के आगे pencil icon पर click करें
अब प्रदर्शित text box में basic calculus type करें enter दबाएं
topic name के परिवर्तन पर ध्यान दें
अब उस topic के दाईं ओर दिए गए edit link पर click करें
और फिर edit topic option पर click करें
यह हमें summary पेज पर लाता है
यहाँ summary field में हम topic का एक संक्षिप्त सारांश दे सकते हैं जैसा कि प्रदर्शित किया गया है मैं वैसा लिखूंगी
नीचे scroll करें और save changes button पर click करें
बदलाव पर गौर करें
इस तरह हम अपने moodle में course का विवरण जोड़ना शुरू करते हैं
अब हम moodle से लॉगआउट करेंगे ऐसा करने के लिए ऊपरी दाईं ओर पर user icon पर click करें अब log out option चुनें
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा course overview विवरण teachers dashboard
edit profile settings और
नियतकार्य के रूप में
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में समय के साथ अपने प्रश्नों को post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित हैं मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद